इस तस्वीर में एक बड़ा सा बिल्डिंग अथवा मॉल दिखाया गया है।

और इसके आसपास कई स्टॉल्स भी है।

जैसे कि काला अंगूर हरा अंगूर प्रोमोग्रेनेट बनाना और पिछले वाले भाग में कुछ संतरे भी है।

और यहां अभी इवनिंग टाइम है।

इस तस्वीर में एक मॉल का वूमेन क्लोथिंग सेक्शन दिखाया गया है।

और यहां पे कई सारे एथेनिक ड्रेसेस भी हैं।

हर एक अलग किताब के लिए अपना अपना सेक्शन रखा है।

यह तस्वीर एक डायरी दुकान के सामने की है।

इस बालकनी का दरवाजा और खिड़की भी खुला है।

यह घर ज्यादातर सफेद रंग में रंगा गया है।

और लग रहा है उस पहाड़ों में अभी बरसात हो रही है।

आहा यह डेकोरेशन सफेद और नीले रंग के पर्दे से ज्यादा किया गया है।

और ये बहुत लोग भी इकट्ठा हुए है।

और वो बड़े से पत्थर के सामने एक टहनाई है जिसमें एक पक्षी भी है।

इस तस्वीर में एक पुराना बुद्ध स्मार्ट अथावा मॉनेस्ट्री दिखाई दे रहा है।

इसके पिछले भाग में घने बरे पेड़ भी है।

पीले और लाल रंग से सजाया गया है।

और यहां पर बहुत अद्भुत आर्किटेक्चर भी देखने को मिलता है।

इस पार्क के आसपास हरे भरे पेड़ हैं।

इस चित्र में एक माल का सेक्शन दिखाया गया है।

इस पार्क के अंदर थोड़ा बहोत पेड़ पौधे भी लगाए हुए हैं।

यह जगह एक बड़े से घर के साइट की जगह है।

खेतों के बीच में एक झोपड़ी भी है।

तस्वीर में एक सलोन का फ्रंट डेस्क का भाग दिखाया गया है।

इसका इंटीरियर डिजाइन बहोत सुंदर है।

और इन्होंने अपना एक मिरर सेल्फी भी लिया है।

इस सैलून अथवा शॉप में पीछे बहोत सारे प्रोडक्ट्स भी रखे गए हैं और एक बोर्ड भी बनाया गया है।

और इस तस्वीर में पहाड़ के बीच छोटे छोटे सफेद रंग के घर अथवा घर का रूफ भी दिखाई दे रहा है।

ऊपर का जो भाग है वो हरा रंग का है।

इस चित्र में बुद्धिस्ट धर्म से जुड़ी दो तीन घर दिखाई दे रहे हैं।

इस तस्वीर में एक बड़ा सा बिल्डिंग और एक सड़क दिखाई दे रहा है।

इस तस्वीर में एक लेख अथवा रिवर दिखाया गया है।

और इसके सामने एक नेट से बैरियर बनाया गया है।

इसके साइड से एक रोड भी गुजरती है।

इस तस्वीर में एक भीड़ भाड़ जगह दिखाई दे रही है।

इसमें इसमें एक रास्ता भी है जहां कई सारे लोग इकट्ठा हुए हैं।

इस तस्वीर में एक पार्क अथवा गार्डन दिखाया गया है।

कई गार्जियंस अपना अपना बाइक भी लेकर आए हैं।

यह जिम वेल वेंटिलेटर है और इसका इंटीरियर डिजाइन भी बहुत अच्छा है।

यहां कहीं सारे टूल्स भी रखे है।

इस तस्वीर में एक वॉल दिखाया गया है जिसको पत्थर की मदद से जोड़ा गया है।

इस तस्वीर में एक रेलवे ट्रैक अथवा एक स्टेशन दिखाया गया है।

इस तस्वीर में एक बिल्डिंग दिखाया गया है।

और इसके साइड में एक प्यारा सा डिजाइन भी बनाया गया है जिसको गोल्डन कलर से हाईलाइट किया गया है।

तस्वीर में एक मेकअप रूम दिखाया गया है।

यहां पर दो कुर्सियां रखी हुई है।

इस रेस्टोरेंट का इंटीरियर डिजाइन भी बहुत अच्छा है इसकी लाइटनिंग और यहां पर ए_सी भी लगाया गया है।

इस तस्वीर में एक मस्जिद जैसा बंगलो दिखाई दे रहा है।

इसके ऊपरी भाग लाल रंग से रंगा है इसके कोर्टयार्ड पे भी गाड़ियां खड़ी खड़ी है।

इस तस्वीर में तीन देवता की मूर्ति दिखाई दे रही है जो कि पीले रंग की है।